जहाँ पर हमें एक होटल दिखाई दे रहा है जिसका नाम ब्लू लोटस है होटल के अन्दर लाइटिंग की गयी है।

जे दूकान स्कूल के बच्चों के लिए पेंसिल इरेज़र पिन और दूसरे सामान की दुकान है।

इसके साथ ही बिल्डिंग में एक दरवाजा है जिसके पास एक सिक्यूरिटी गार्ड बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है।

जे सिनेमा का नाम गैनेश सिनेमा है।